जीचेम्पेंट में एनालिसिस ओएफ कम्पाउंड्स के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे आणविक प्रासंगिक मेन्यू अणुओं को mol फॉर्मेट में सेव करना
एक अभिक्रिया को जोड़ना और एडिट करना
अभिक्रिया के एरो पर अभिकर्मक और अभिक्रिया की कंडीशन्स जोड़ना
अभिक्रिया के अणुओं को 3डी में बदलना
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टु लिनक्स ओएस वर्जन 1204 जीचेम्पेंट वर्जन 01210 आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी आवश्यकता होगी
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको जीचेम्पेंट के साथ परिचित होना चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
मैंने एक नयी जीचेम्पेंट विंडो खोली है
उसे ओर मैनेज टेम्पलेट्स टूल पर क्लिक करें
नीचे टेम्पलेट्स टूल प्रॉपर्टी पेज खुलता है
टेम्पलेट्स ड्राप डाउन बटन पर एमिनो एसिड्स पर क्लिक करें
सूची से अलानाइन ऐलानाइन सेलेक्ट करें
अलानाइन ऐलानाइन का स्ट्रक्चर टेम्पलेट्स प्रॉपर्टी पेज पर लोड होता है
स्ट्रक्चर पर क्लिक करें और इसे लोड करने के लिए डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
अब मैं अलानाइन ऐलानाइन अणु के प्रासंगिक मेन्यू के बारे में समझाउँगी
अणु पर राइट क्लिक करें
एक सबमेन्यू खुलता है
मॉलिक्यूल सेलेक्ट करें इसके साथ एक प्रासंगिक मेन्यू खुलता है
प्रासंगिक मेन्यू भिन्न मेन्यू आइटम्स रखता है जिनके बारे में मैं बताऊँगी निस्त वेबबुक पेज फोर थिस मॉलिक्यूल पबचेम पेज फोर थिस मॉलिक्यूल ओपन इन कैल्कुलेटर निस्त वेबबुक पेज फोर थिस मॉलिक्यूल पर क्लिक करें
अलानाइन ऐलानाइन का निस्त वेब पेज खुलता है
वेबपेज अलानाइन ऐलानाइन के बारे में सारी जानकारी प्रदर्शित करता है
जीचेम्पेंट एडिटर पर वापस आते हैं
पबचेम पेज फोर थिस मॉलिक्यूल खोलने के लिए अलानाइन ऐलानाइन पर राइट क्लिक करें
इस वेबपेज पर अलानाइन ऐलानाइन स्ट्रक्चर पर क्लिक करें
एक नया वेबपेज 2डी स्ट्रक्चर और 3डी कन्फॉर्मर टैब्स के साथ प्रदर्शित होता है
अलानाइन ऐलानाइन को 3 डाइमेंशन्स में देखने के लिए 3डी कन्फॉर्मर टैब पर क्लिक करें
प्रदर्शित 3डी स्ट्रक्चर पर क्लिक करें
यह स्ट्रक्चर को ऊपर और बाईं ओर कुछ कंट्रोल्स के साथ एक अलग विंडो में खोलता है
स्ट्रक्चर को भिन्न दिशाओं में घुमाने के लिए रोटेशन आईकन पर क्लिक करें
उसी पेज पर हाइड्रोजन्स प्रदर्शित करने के लिए ह आईकन पर क्लिक करें
ये हाइड्रोजन्स हैं
एक बार फिर जीचेम्पेंट विंडो पर जाएँ
अलानाइन ऐलानाइन पर राइट क्लिक करें ओपन इन कैल्कुलेटर विकल्प चुनें
केमिकल कैल्क्युलेटर विंडो खुलती है
यदि नहीं तो जैसा ओवरव्यू ट्यूटोरियल में करते हैंकृपया सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर उपयोग करके इसे संस्थापित करें
इस विंडो पर नीचे दो टैब्स हैं कॉम्पोजीशन और आइसोट्रोपिक पैटर्न
कॉम्पोजीशन टैब्स निम्न कॉम्पोनेंट्स रखती है फार्मूला रॉ फार्मूला gmol 1grammole इनवर्स में मॉलक्यूलर वेट कंपाउंड की एलीमेंटल मास परसेंटेज अनैलिसिस आइसोट्रोपिक पैटर्न टैब पर क्लिक करें
यह आणविक भार पर पीक के साथ इस कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रम ग्राफ दिखाता है
एक नियत कार्य की तरह 1
टेम्पलेट्स सूची से अन्य एमिनो एसिड्स सेलेक्ट करें
उनकी कॉम्पोजीशन और आइसोट्रोपिक पैटर्न प्राप्त करें
मैंने एक नयी जीचेम्पेंट विंडो खोली है
अब 13 ब्यूटाडीन स्ट्रक्चर बनायें
एड आ चैन टूल पर क्लिक करें
चार कार्बन्स जोड़ने के लिए चेन पर क्लिक करें और इसे खींचें
एड आ बोंड टूल पर क्लिक करें और डबल बॉन्ड बनाने के लिए पहली और तीसरी स्थितियों पर क्लिक करें
परमाणुओं को दर्शाने के लिए प्रत्येक स्थिति पर राइट क्लिक करें
एटम पर क्लिक करें और फिर डिस्प्ले सिंबल पर क्लिक करें
13 ब्यूटाडीन 2 डी स्ट्रक्चर को 3 डी स्ट्रक्चर में बदलने के लिए टूल बार पर सेव आईकन पर क्लिक करें
सेव एएस डायलॉग बॉक्स खुलता है
फाइल टाइप क्षेत्र में एमडीएल मोलफाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करें
फाइल का नाम 13 ब्यूटाडीन टाइप करें
डेस्कटॉप पर सेव करने के लिए डेस्कटॉप सेलेक्ट करें
फिर सेव बटन पर क्लिक करें
वैकल्पिक रूप से आप सीधे mol या mdl एक्सटेंशन के साथ भी फाइल सेव कर सकते हैं
उदाहरणस्वरूप फाइल का नाम 13ब्यूटाडीन mol या mdl टाइप करें
सेव बटन पर क्लिक करें
स्ट्रक्चर को 3 डी में देखने के लिए अणु पर राइट क्लिक करें
ओपन विथ मॉलिक्यूल्स व्यूवर विकल्प सेलेक्ट करें
यह 3डी में 13ब्यूटाडीन है
ध्यान दें हम स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं कर सकते
स्ट्रक्चर को घुमाने के लिए कर्सर को स्ट्रक्चर पर रखें माउस से पकडे और खींचें
एक नियत कार्य की तरह बेंज़ीन स्ट्रक्चर को 2डी से 3डी में बदलें
अब रासायनिक अभिक्रिया और अभिक्रिया की कंडीशंस बनाना सीखें
यह क्रमशः ईथीन और इथेनॉल बनाने के लिए इथाइल क्लोराइड की एल्कोहॉलिक पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड और एक्वस पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया है
मैंने एक नयी जीचेम्पेंट विंडो खोली है
सबसे पहले इथाइल क्लोराइड स्ट्रक्चर बनाते हैं
एड आ चैन टूल पर क्लिक करें
डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
परमाणु प्रदर्शित करने के लिए चेन पर बॉन्ड की पहली और दूसरी स्थितियों पर राइट क्लिक करें
करेंट एलिमेंट ड्राप डाउन एरो बटन पर क्लिक करें
टेबल से सीएल सेलेक्ट करें
एड ओर मॉडिफाई एएन अतोम टूल पर क्लिक करें
बॉन्ड की तीसरी स्थिति पर क्लिक करें
इथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बन गया है
एड ओर मॉडिफाई आ ग्रुप ओएफ एटम्स टूल पर क्लिक करें
डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करेंटाइप करें alcकोह फिर से क्लिक करें और टाइप करें aqकोह एड एएन अरो फोर एएन इरिवर्सिबल रिएक्शन टूल पर क्लिक करें
आप एरो लेंथ बदल सकते हैं यहाँ उपस्थित स्क्रोलर उपयोग करके
मैं एरो लेंथ 280 तक बढ़ाउंगी
इथाइल क्लोराइड के समीप डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
इथाइल क्लोराइड के नीचे क्लिक करें
माउस को पकड़ें और एरो को नीचे की ओर घुमाएं
सिलेक्शन टूल पर क्लिक करें
एल्कोहोलिक पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड alcकोह को पहले एरो के ऊपर स्थित करें
एक्वियस पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड aqकोह को दूसरे एरो के ऊपर स्थित करें
एल्कोहोलिक पोटैशियम hydroxidealcकोह सेलेक्ट करें
एरो पर राइट क्लिक करें
एक सब मेन्यू खुलता है
एरो सेलेक्ट करें और अटैच सिलेक्शन टो अरो पर क्लिक करें
अरो एसोसिएटेड शीर्षक के साथ डायलॉग बॉक्स खुलता है
रोले ड्राप डाउन सूची पर क्लिक करें
सूची से कैटलिस्ट सेलेक्ट करें
क्लोज पर क्लिक करें
यह जांचने के लिए कि एल्कोहोलिक पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड alcकोह कैटलिस्ट की तरह जुड़ा है या नहीं एरो को खींचें
प्रक्रिया को एक्वियस पोटैशियम Hydroxideaqकोह के साथ भी दोहराएं
कैटलिस्ट की तरह जुड़ा है या नहीं देखने के लिए इसे खींचें
सिलेक्शन टूल पर क्लिक करके इथाइल क्लोराइड स्ट्रक्चर सेलेक्ट करें
कॉपी के लिए CTRL सी दबाएं और स्ट्रक्चर्स को पेस्ट करने के लिए CTRLV दबाएं
खींचकर स्ट्रक्चर्स को उचित स्थान पर स्थित करें
अभिक्रिया में इथाइल क्लोराइड एल्कोहलिक पोटैशियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करके ईथीन देता है
इथाइल क्लोराइड ऍक्वस पोटैशियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करके इथनॉल देता है
ईथीन प्राप्त करने के लिए इरेज़र टूल पर क्लिक करें और इथाइल क्लोराइड के सीएल बॉन्ड को हटायें
इथेन बनता है
निश्चित कर लें कि टूल बॉक्स में कर्रेंट एलिमेंट कार्बन है
एड आ बोंड टूल पर क्लिक करें और डबल बॉन्ड प्राप्त करने के लिए बॉन्ड पर क्लिक करें
ईथीन बनता है
इथनॉल प्राप्त करने के लिए कीबोर्ड पर ओ दबाएं
एड ओर मॉडिफाई एएन अतोम टूल पर क्लिक करें
और फिर इथाइल क्लोराइड के सीएल पर क्लिक करें
अब अभिकारकों और उत्पादों को 2 डी से 3 डी में बदलें
एक नयी फाइल खोलें इथाइल क्लोराइड कॉपी करें और इसे नयी फाइल पर पेस्ट करें
सेव बटन पर क्लिक करें
सेव एज़ डायलॉग बॉक्स खुलता है
फाइल का नाम इथाइल chlorideमोल टाइप करें
डेस्कटॉप पर फाइल सेव करने के लिए डेस्कटॉप पर क्लिक करें
सेव बटन पर क्लिक करें
इसी प्रकार ईथीन को नयी फाइल पर कॉपी करें
etheneमोल की तरह सेव करें
इथनॉल को नयी फाइल पर कॉपी करें
ethanolमोल की तरह सेव करें
मैंने अपने डेस्कटॉप पर पहले ही फाइल्स सेव कर ली थीं
मैं कर्रेंट विंडो को छोटा करुँगी
और मैं डेस्कटॉप के उस फोल्डर पर जाउंगी जहाँ मैंने फाइल्स सेव की थीं
कंपाउंड 3 डी में देखने के लिए फाइल पर राइट क्लिक करें ओपन विथ मॉलिक्यूल्स व्यूवर विकल्प चुनें
इसी प्रकार मैं सारी फाइल्स मॉलिक्यूल्स व्यूवर में खोलूँगी
कंपाउंड्स को 3 डी में देखें
अब सारांशित करें कि हमने क्या सीखा इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न के बारे में सीखा निस्त वेबबुक पेज फोर थिस मॉलिक्यूल pub चेम पेज फोर थे मॉलिक्यूल केमिकल कैलक्यूलेटर उपयोग करके कंपाउंड का आणविक भार ज्ञात करना
अणु के मास स्पेक्ट्रम का ग्राफ प्राप्त करना
अणु को mol फॉर्मेट में सेव करना
अभिक्रिया के एरो पर अभिक्रिया की कंडीशंस और अभिकर्मक जोड़ना
एक अभिक्रिया को जोड़ना और एडिट करना
अभिक्रिया के अणुओं को 3 डी स्ट्रक्चर्स में बदलना
एक नियत कार्य की तरह निम्न रासायनिक अभिक्रिया बनायें 1प्रोपीन और ब्रोमीन अणुओं की कार्बन टेट्रा क्लोराइड को कैटलिस्ट की तरह उपयोग करते हुए
बेंज़ीन और क्लोरीन अणुओं की एनहाइड्र्स एल्युमिनियम क्लोराइड को कैटलिस्ट की तरह उपयोग करते हुए
आपका पूर्ण नियत कार्य इस प्रकार दिखना चाहिए
इस उर्ल पर उपलब्ध वीडियो देखेंhttpspoken tutorialorgWhat is a Spoken ट्यूटोरियल यह स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद